यहां पे मुझे एक सैलून की दुकान दिखाई दे रहा है जो सैलून का दुकान काफी अच्छा है यहां पे काफी अच्छी से सजी हुआ हुआ है और यहां पर एक आदमी जो जींस ये जींस हॉफ पैंट और एक गंजी में कटवा रहे हैं कुछ आदमी उधर हाथ धोए हैं कुछ आदमी टी_वी भी यहां पे लगी हुई है।

यहां पे एक झरना के टाइप मुझे दिखाई दे रहा है जो काफी अच्छा है बगल में सन सेट हो रहा है और यहां पे बगल में काफी हरा हरा पेड़ पौधा भी है बगल में एक घर भी है घर वाइट कलर से है और यहां पे ऊपर की ओर पानी--

यहां पे एक ब्रिज की तरह है और बगल में एक बहुत बड़ा रिवर है।

यहां पे कुछ आदमी उसके फोटो भी ले रहे हैं बगल में एक मूर्ति भी बनी हुई है यहां पे पॉट भी रखा हुआ है जिसमें काफी अह फूल --